इयररिंग्स और भी बहोत कुछ दिखाई दे रहा है।

और यहां लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर शॉप्स दिखाई दे रही है।

टी_वी दिख रहा है ए_सी दिखाई दे रहा है।

छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

सीमेंट दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लकड़ियों के पीस दिखाई दे रहे हैं।

कोई यहां फर्श भी दिखाई दे रहा है और बच्चों के आगे बहोत सारा ड्राइंग का सामान दिखाई दे रहा है।

यहां पर गाड़ी दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है।

मेडल भी रखे हुए हैं और इसे बहोत सुंदर वह गुब्बारे से सजाया गया है गुब्बारों का रंग काला पीला अ लाल है।